और पास ही मे सड़क पर चक्कर पर जाता हुआ एक आदमी और एक छोटा बच्चा हमे नजर आ रहा है।

और दो लड़कियां गुलाबी रंग के कपड़े और लाल रंग की टोपियों मे नजर आ रही हैं।

और कुछ लोग आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें तीन लड़के भागते हुए नजर आ रहे हैं।

और एक आदमी खड़ा हुआ और एक बैठा हुआ और कुछ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं।

किसी चर्च से लिया हुआ एक दृश्य है।